लाइका सब हय। एगो घर हई। एगो मैडम हय। लाइका सब पेंटिंग बनावत हई---

छुक- छुक काजग पर गूँद हई। लाइका कई गो एक दो तीन चार पाँच छौ गो लाइका हई। एगो मैडम ---

लइका सब हेय पेन टिंग बनावत हेय । एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस गो लड़का हेय। सब जूता पहनले हेय। एक-दो-तीन गो खिड़की हेय नी --